और पांच छह सात लोग बाहर लाइन में हैं और एक बाहर में मोटरसाइकिल है। एक आदमी पैसे निकल के निकाल --

सारे लोग खड़ी है और अपने-अपने हाथ में झंडा रखे हुए है ओ वाइट कलर का।

एक दरवाज़ा है जो घर जैसा बना हुआ है और उसके पीछे पर्दा लगा हुआ है।

एक पुल है जो गाड़ी पुल पे गाड़ी गाड़ी खड़ा हुआ है और टेम्पू भी जा रहा है। सभी लोग अपने-अपने समान ले रहे हैं।